पिंक कलर की टीशर्ट में सेल्फी लेते हुए खड़ा है। वह सेल् --

इतना छोटा की एक व्यक्ति उसके अंदर लेट कर जाने का प्रयास कर रहा है।

दे रहे हैं। यहाँ पर एक बालू का ऊँचा ढो और उसके इर्द-गिर्द टुकड़ी कुछ ईंटें दिखाई दे रहे हैं।

काले शीशे रंग शीशे से बनाया गया है।

घर के सामने एक पेड़ लगा लगा हुआ है जिसके सिरे पर लाल रंग के फूल लगे है।

इस फोटो को शाम के समय लिया गया है शाम के समय जब सूर्य छिप रहा था उस समय इस फोटो को खिचा गया है।